और बहुत सारे मसाले रखे गए है एक फेविक्विक रखा हुआ है जो उसकी पन्नी पीली है बिस्किट के पैकेट जो नीला और नी ए लाल है।

दीवाना सफेद चक्र बनी हुई हरी और एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है हरे रंग का पेड़ है जो नीम के पेड़ है उसकी हरी पत्ती है सफेद नीला आसमान है सीढ़ी बना हुआ है।

क्लास रूम है जो नील और कत्थे रंग के टेबुल है दीवाल सफेद है बोर्ड लगा हुआ है खिड़की बनी है काँच लगे बगल में बोर्ड है काले रंग का--

टीने लगी हुई है सफेद रंग की लाइट ज्वले एक ड्रयार बना हुआ है अंदर बहुत सारे क्रीमें रखी गई है ओ काले रंग की है।